यहां पर एक लड़की खड़ी हुई है और ये एक दुकान है।

और सीलिंग पर छोटे एल_ई_डी लाईट लगे है।

यहाँ पप्र बहुत सारे पर्दों से डेकोरेशन किया गया है।

ये पीछे एक वाइट कलर की बिल्डिंग है और बहोत सारे बच्चे ठहेर कर फोटो ले रहे है।

और तिन चार खम्भे लगाये गये है और उसके आजू बाजु कुछ कुड्सिया रखी गयी है।

और पीछे एक मंडप मारा गया है जहाँ बहुत सारे लोग है।

यहाँ पर एक सटर है जो बंद किया गया है।

और उसके सामने एक रोड है और एक आदमी खड़ा हुआ है और उपर खुला आसमान है।

और इस दूकान पर पिज़ा और बर्गर कि फोटो लगी हुई है।

यहा पर एक घर है घर के दीवाल पर एक तस्वीर लगी हुई है।

यहाँ पर बहोत से लोग खड़े है ऊपर सीलिंग फेन है।

एक आदमी सफेद रंग की बकीट लेकर बैठा है और एक आदमी के सामने लाल रंग की बकीट है।

और दो गाडिया खड़ी है यहाँ पर कुछ सीढियाँ है।

यहाँ पर एक खे-खेत जैसा है जहा बहोत सारे छोटे छोटे --

और इन फूलो का रंग पिला है यह चंदुल फुल दिख रहे है।

और एक स्प्राइट की बोटल रखी हुई है टेबल है अंदर बहोत सी चिजा है।

उनके बिच लाइट के खम्भे भी दिख रहे है आजू बाजू छोटे और बड़े--

हरे भरे झाड नजर आ रहे है।

यहाँ पर बहोत सी बड़ी बड़ी बिल्डिगे दिख रही है।

बहोत सारे झाड़ भी दिख रहे है ऊपर खुला आसमान है।

यहाँ पर बचो का खेलने का फिसल भंडा है और एक लाल रंग का बड़ा सा बोल है।

यहाँ पर सेल्फ में बहोत सारे कप --

और गिलासेस रखे गए है दीवार पर कार कि फोटो है।

उदर पीछे एक सफ़ेद रंग का घर दिख रहा है उपर खुला आसमान है।

यहा पर एक फंक्सन चल रहा है बहोत सारा फूलो का डेकोरेशन किया गया है।

उनके बिच एक टेबल है टेबल बहोत सारे पेपरा और बुका रखे हुए है।

और बाजू एक टेबल भी है।

यहाँ पर एक छोटी छोटी पोधो कि एक नर्सरी लगी है।

यहां पर एक बड़ी सी लकड़ी पर बहोत से पॉट्स और उसमें पौधे लगे हुए है।

आजू बाजू हरे भरे झाड़ हैं और ऊपर खुला आसमान हैं यह दिन का नजारा हैं।

यहां पर एक पेंट कर रहा है लड़का एक पेंट की बकीट है।

यहा पर एक बड़ा सा तालाब है और उसके आजू बाजू बहोत --

आईने के बाजू पाउडर का डब्बा और बोतलें रखी गई हैं।

ये रोड है और झाड़ों के नीचे हरी भरी घास है।

और दो कुर्सियां हैं एक पर्दा भी लगाया गया है।